मोल-भाव करते हुए नजर आ रहें हैं।

अअ दुकान का नाम पुतली पेस्टरी शॉप है।

नदी के किनारे बहुत सारी वनस्पति दिखाई गई है।

जिसमे माता दुर्गा के बहुत सारे अवतार अवतारों को --

जिसके किनारे मे बहुत सारे वृक्ष लगे हुए है।